और इधर बहुत सारे फुग्गा फुगाए हैं गुब्बारे हैं जो कि सजाए हुए हैं जो कि बढ़िया दिख रहे है दिखने में --

यहां बहुत सारी घूमने की जगह है जिनमें गार्डन वार्डन है जिसमें यहां घूम सकते हैं लोग और उधर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

जो भी गेट वेट बना है चाहे कुछ और टावर जैसे बट मतलब वो कंपनी है ज ज कंपनी या किसी का फैक्ट्री है।

यहां एक मतलब गार्डन है उधर ही एक दो तीन मंजिल का बिल्डिंग है सब में कॉम मतलब कॉम्प्लेक्स है।